इस पिक्चर में एक जनरल स्टोर दिखाया गया है जिसमें बच्चों के खाने पीने की काफी सारी चीजें भी दिखाई दे रही हैं।

और उसके बाहर कुछ बच्चे जिनों पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

गाय के गले में रस्सी भी बंधी हुई नजर आ रही है।

इस पिक्चर में एक जगह दिखाई गई है जो की काफी लंबी नजर आ रही है।

और साथ ही में कुछ पिलर भी दिखाई दे रहे हैं जो कि व्हाइट और पर्पल कलर के पुते हुए नजर आ रहे हैं।

आसपास काफी पेड़ पौधे लगे हुए हैं। साथ ही नीचे--

इस पिक्चर में एक रेस्टोरेंट जैसा नजर आ रहा है।

ये एक लकड़ी का बोर्ड नजर आ रहा है जोकि--

काफी बड़ा है और वो एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है।

ये कुछ गैस सिलेंडर है ऑक्सीजन गैस सिलेंडर रखे हुए हैं।

टायरों के डिजाइन में रेलिंग भी बनी हुई है जो कि काले कलर की दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में काफी बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है जो की काफी बड़ा सारा नजर आ रहा है। ऊपर छत भी दिखाई दे रही है।

ये सारे पुतले अलग-अलग पोशाक पहने हुए है और एक लाइन से खड़े हुए है एक पुतला नीचे की तरफ झुका हुआ है।

इस पिक्चर में काफी बड़ा और काफी सुंदर घर दिखाई दे रहा है जो की--

गाना बजाने की सामान रखा हुआ नजर आ रहा है।

दीवार घर की दीवार है दीवार व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है उस पे लाल और--